यह पहाड़ी इलाक़ा है एगो अलग़ ही बना हुआ है। काफी सुंदर दृश्य है। साफ़ सुथरा है काफी मनोरंजन --

लाइट लगी है और रात में देखने में बहुत ही खूबसूरत लगता है और यहाँ लोग आते हैं और सैर सपाटा करते हैं काफी लुभाने वाली चीज़ है।

यह स्विमिंग पूल है। स्विमिंग पूल का दृश्य काफी सुंदर है। लोग यहाँ पे नहाने के लिए आते हैं। परिवार दोस्त को ले करके और काफी आनंद लेते हैं। सभी शहर में एक स्विमिंग पूल होना चाहिए जिससे हमलोग आनंद ले सकें।

मछली से हमें बहुत ही लाभ --